छोटे बच्चे खेल रहे किसी के हाथ में बैट है गिल्ली है।

और कुछ कुड़ा कचड़ा भी पड़ा बहोत सारे आदमी जो सेल्फी ले रहे हैं व फोटो ले रहे--

और उधार मांग कर शर्मिंदा न करें एक येलो कलर का बोर्ड लग रहा लाइट लग रही हैं शीशे में पैक है काट के बाउंड--

छोटी छोटी बस के अंदर कुछ --